तो देख पा रहे हैं एक बड़ी सी मूर्ति है जिसमें दो सदस्य नजर आ रहे हैं एक है कृष्ण जी और एक है राधा जी दोनों की बहुत ही सुंदर से वाइट कलर में थोड़ी सी रेड कलर का कंबीनेशन में डिजाइन की गई है।

जेयसा की हम देख पा रहे हे इहापे कुछ लोग नजर आ रहे हे इहापे एक नहीं लगभग एक ही टाइप के कापरे पहने हुए हे मतलब सबने ही व्हाइट --

खाद्य पदार्थ है जो की एक पर अलमारी में के साइड में रखी हुई है और यह यहां पर डाइनिंग टेबल लग रही है और यहां पर गिलास भी रखी हुई है और यहां पर जो प्लेट यूज़ किया गया वह--

स्टील कलर का इउज किआ गआ हे। यहाँ पर जो चीज रखी हुई है खाने की वह देखने में काफी ही लजीज लग रही है। और यहाँ पर बहुत सारा कलर भी इउज किया गया शायद यह फूड कलर हो सकता है। और यह ऊपर एक फेन नज --